जहाँ पे बहुत सारे बाजा-बॉक्स को लगाया गया हैं और उसमें लाइट्स लगाए हैं जो शर्मा ऑडियो का है और ये --

हरमुनिया में बव हरमुनिया में बहुत सारी बटने है।

और लाइट का उत्तम व्यवस्था किया गया है और टायप और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे फर्न फर्निश है।

यहाँ पे धाम पे पूजा फूल-वूल चढ़ाये गए हैं और भी बोहोत लोग हैं जो की उस धाम पे गए हुए हैं।

अनेकों प्रकार के वस्तुए लेकर बैठा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि ब ये दान करने के लिए बैठा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे मजदूर मतलब बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं।

यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अनेकों प्रकार के झुलाए लगाए गए हैं चरखे लगाए गए हैं।

जिसकी छत के ऊपर एक टॉवर और बोहोत से एंटीना लगाए गए हैं।

अनेकों तरह की इ व्यायाम करते हुए नजर आ --

अ हरे-हरे ग्रासों से भरे हुए है।

यह दो न्यू दो ई-रिक्शा रखी गयी हैं।

और इसके नीचे सीडे लगाई गयी हैं।

इसके बीच में एक गोल गोल लाइट क लाइट लगाया गया है।

ये किसी किसी पार्क का दृश्य है जहाँ पे एक सुन्दर सा फव्वारा लगाया गया है।

अ बहुत से लोग इसके अंतर्गत आगे पीछे खड़े हैं।

दृश्य है जो कि फिटनेस जो कि करमा फिटनेस जीम है।

दूल्हे के साथ एक पिले और कुर्ते में एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक मनमोहक पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य है।

और पेड़-पौधे उगे हुए है एक व्यक्ति जो कि सफ़ेद रंग का गमछा --

और एक आवागमन के लिए एक सड़क दिया --